यहाँ आस-पास के ओर लोकेशन बहुत ही बढ़िया चारो तरफ हरियाली हरियाली यहाँ का नज़ारा बहोत ही बहोत ही बढ़िया है जो कि लोगो को बहोत ही पसंद है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे घर बना रहे है।

मदद के लिए यहाँ पे किताबे मिलती हैं और उचित दामों पर मिलती है यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जाता है और डिस्काउंट अधिकतर बहोत ही अच्छी डिस्काउंट दी जाती है।

जोकि लोगों को बहुत ही पसंद आता है । यहाँ का सर्विस बहुत ही बढ़ियां सर्विस दी जाती है जोकि वेटर लोग बहुत ही बढ़ियां सर्विस देते है यहाँ पे ।

और अच्छी क़्वालिटी के फ़ोन्स भी दी जाती है यहाँ पे यह दुकान बहोत ही बढ़िया दुकान है जहाँ पे बहोत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोन लेने के लिए स्मार्ट फ़ोन ।

यह पान मीठी पान भी होती है सुपारी भी पान होती है जर्दा वाला भी पान होती है यहाँ पर हर तरह की पान मिलती है और एक से एक भैराइटी के पान यहाँ पर मिलती है।

लोग जब घूमते-घूमते यहाँ पे आते तो यहाँ का नजर देखते हैं बहुत हीं सुंदर नजारा आता है यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही काफी सुंदर है।